यहाँ पर एक गार्डन है इस गार्डन पर --

धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम पर बहुत सारे लोग कुर्सियों पर बैठ कर इस --